एक पानी का पुल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक डक बनाया हुआ है जिसका मुंह खुला है ।

दिखाई दे रही है जो जिसके अंदर नीला कलर पुता हुआ है।

एक पैनल लगा हुआ है और सामने एक लड़की सफेद कलर की --

ऊपर की छत नजर आ रही हैं जिसके उपर --

वहां पर भी हमें एक बहुत बड़ा गुंबद दिखाई दे रहा है।

कुर्सियों के पीछे हमें एक दीवाल के ऊपर एक कांच का खिड़की नजर आ रही है।

घर नजर आ रहे हैं उपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

वहां पर गुब्बारा टंगे हुए हैं पास में ही एक नदी दिखाई दे रही।

सामने की तरफ बहोत से कुछ लो आदमी औरत खड़े हुए हैं।

एक बाइक खड़ी है नजर आ रही है जिसके उपर हेलमेट टंगा हुआ है वो नीले कलर की है पास में एक साइकिल खड़ी हुई है।

दीवाल पे हमें एक कांच नजर आ रहा है जिसके अंदर हमें बच्चे योगा के --

पंडाल के पीछे हमें एक केले के पत्तों का पेड़ नजर आ रहा है ।

और आसमान दिखाई दे रहा है वह घर हरे कलर का है।

दुकान नजर आ रही है जिसके बास की खंबे हुए हैं। --

पीछे टीन के ऊपर जो पर साड़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है ।

उधर आम नजर आ रहा है जिसके अंदर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

स्टील का वो धामा रखा हुआ है उसके अंदर हरी मिर्ची तुल रही है।

यो टो जीन्स पे टोपी लगा के बैठा हुआ हे उसी के पीछे एक और लड़का बैठा हुआ है।

वहां पर तिरुपुर पेड़ लगा हुआ है जिसके ऊपर नीला और सफेद कलर पुता हुआ है।

वह दीवाल को पोत रहे हैं।

कुछ अअ एक आदमी ने सफेद कलर का --

कुर्ता पजामा पहना हुआ अंदर की तरफ हमे व्हाइट शर्ट पहने हुआ एक आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे है बाहर की ओर |

नजर आ रही है जिसके अंदर माता की मूर्ति उन्होंने लाल कलर की चुन्नी पहनी हुई है।

एक आटो खड़ी हुई है जो --